मिटटी का ढेर लगा हुआ है दो लड़के खड़े है उन्होंने हेलमेट पहने हुए है।

बड़ा सा मैदान है चारो और हरियाली है पेड़ पौधे हैं।

पेड़ है पेड़ पर सीढी लगी है।

जमीन गीली है वायरे लगी हुई है सामान है।

एक तम्ब बना हुआ है तम्ब के ऊपर मूर्ति लगी हुई है।

पेड़ो पर लडिया सजी हुई है लोहे का गेट बना है।